यहाँ पर दीवारों का कलर व्हाईट ऑरेंज दिखाई दे रहा है और कई सारे लाइट दिखाई दे रही है।

जिनका कलर ग्रीन ग्रे ब्लैक दिखाई दे रहा है और कुछ दिवार दिखाई दे रही है जिनका कलर ग्रे वाइट ऑरेंज दिखाई दे रहा है कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।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

--दिखाई दे रहा है और कुछ खिड़की दिखाई दे रही है आसमान का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गेट का कलर ग्रे ग्रीन पर्पल दिखाई दे रहा है और पर्दे का कलर पिंक ग्रे दिखाई दे रहा है कुछ पे--

ऊपर आसमान का कलर वाइट ग्रे दिखाई दे रहा है और कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका कलर ग्रीन ग्रे ऑरेंज दिखाई दे रहा है और कुछ पड़े पौधे--

येल्लो दिखाई दे रहा है और कुछ कार ऑटो दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ पौधों दिखाई दे रहे है जिनका कलर ग्रीन दिखाई दे र--

और कई सारे कूलर और खिड़कियां दिखाई दे रही है यहाँ पर कई सारे कांच दिखाई दे रहे जिनका कलर ब्लू येलो दिखाई दे रहा--

गमले दिखाई दे रहे हैं और कई सारे गेट कांच के दिखाई दे रहे हैं कुछ पौधे दिखाई दे रहे और कुछ पेड़--